और खाफी अच्छी तरह का से सजावट इसका किया गया है।

का सलून है जो कि यहाँ पर एक नाई जो है यहाँ पे किसी आदमी का बाल या शेविंग कर रहा है जो कि काफी कुशल कारीगर है।